रेलवे स्टेशन दिखाई दे रही है। पलेटफारम बना हुआ है बीच में। इस साइड भी रेलवे लाइन है इस साइड भी रेलवे लाइन । टीन शेड दिखाई दे रहा है। ऊपर बिजली जल रही है।

टावर दिखाई दे रहा है। कुछ बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं बाजु में उम्म बाजु में रेल खड़ी हुई है जो लाल कलर की है डिब्बे खड़े हुए है रेल के तो कुछ नीले कलर के दिखाई दे रहे है।

सुन्दर नजारा देखाई दे रहा है। बहुत सारा स्वच्छ मैदान पड़ा हुआ है और इसके सामने टाइल्स लगे हुए हैं बड़ा गेट लगा हुआ है लोहे का जो काले कलर पुता हुआ है काले कलर का।

और इसे में एक नीचे कुर्सी रखी हुई है इस कुर्सी का कलर काला दिखाई दे रहा है।

इसमे गेट मेन गेट बना हुआ है। मेन गेट लोहे का बना हुआ है। दो दरवाजे कथई कलर से पुती हुई दिखाई दे रहे हैं। नीचे रोड बना हुआ है और आयकर विभाग लिखा हुआ है नीले कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

कुछ ऑरेंज हरा और थोड़ा काला दिखाई दे रहा है इसपे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहा है साइड भी पेड़ दिखाई दे रहा है ऊपर खुल्ला दिखारे नीला और सफ़ेद आकार का बादल दिखाई दे रहा है।

इनमे लोहे का कुंडा बना हुआ है और इसे स्विमिंग पुल कहते है। इसमें फुब्बरे चल रहे है। पानी भरा रिया है आदमी नहा रहे है।

ऊपर देखाई देख रहा है। ये बहोत ऊँचा बना हुआ टॉवर है। इसकी ऊंची चोटी पर पर काली छतरी लगी हुई है। आठ दस छतरी दिखाई दे रही हैं। इसके आसपास पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाजू में से एक डोरी दिखाई दे रही है और इसके --